और बहुत सारे पेड़ भी दिख रहें हैं।

ये कहीं पे पार्टी वैगरह में --

ये कोई फूल वैगरा का दुकान लग रहा है जहाँ पे कफी सारे--

डरावना सा लग रहा है ।

ये घर टाइप दिख रहा है जिसपे तार लटके हुए हैं।